इस इमेज में एक बहोत बड़ा दरिया दिख रहा है दरिया के किनारे ब्रिज बना हुआ है।

इस शोकेस के अंदर कुछ स्टेचू रखे हुए हैं जो की वाइट कलर का है शोकेस के अंदर बूलू कलर का पार्ट है यह शोकेस कोई घर या शॉप में है।

उस समान के ऊपर ठेले के ऊपर एक गमला है उसके ऊपर एक शर्ट रखी हुई है।

हाथों मे सबके बुक है और पीछे एक आदमी बुक लेके है जो कि गोल्डन कलर की टोपी गोल्डन कलर का कपड़ा ब और वाइट और रेड कलर का कपड़ा पहन के है।

इमेज में सामने एक लड़का दिख रहा है ऐसा लग रहा है वो आईने से फोटो खींच रहा है।

इस इमेज में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है ऐसा लग रहा है जैसे ये चर्च है सामने फ्लैग लगा हुआ है।

सीढ़ियों के सामने लोग खड़े हुए हैं व्हाइट और ग्रीन कलर की बिल्डिंग है ये कुछ लोग नीचे है तो कुछ लोग ऊपर खड़े --

एक लड़के के हाथ में फ्लैग है ऐसा लग रहा है जैसे कोई फंक्शन हो रहा है कोई नाच-गाना हो रहा है जिसमें ये लोग पार्टिसिपेट किए है ग्रीन कलर का कारपेट है।

सामने कैलक्यूलेटर रखा हुआ है। बहुत सारे बुक्स है इस स्टोर में --